दूकान है इसमे बहुत सारा कस्टमर है।

जिस में मेडजी एकाडमी लिखा हुआ है ।

दीपक सुधा डेरी अ है लिखा हुआ --

पीछे पेड़ भी दिख रहा है।

कुछ ईटा और दीवार है जो कि पलस्तर नहीं किया हुआ है एक खम्बा दिख रहा है बिजली का।